ये किसी कपड़े के दुकान की तस्वीर है।

ये तस्वीर किसी घर के बाहर की है जिसमे बहोत से रंग-बिरंगे फूल लगे हुए है।

ये चाट की बहुत ही अच्छी टेस्टी दिख रही है।

जोकी बहुत ही सुंदर बना हुआ है और ये रेल के पटरियों के पास में ही है।

ये किसी नदी या समुद्र के किनारे की फोटो है जिसके मछुवारों द्वारा मछलियों को नदियों से बाहर निकाल लिया गया है।

ये तस्वीर बंदरों की है जो कि बहुत ही प्यारे महसूस हो रहे हैं जो नागफनी के पेड़ के पास--

बहोत ही अच्छी एक प्रतिमा सरदार वल्लभभाई पटेल जी की रखी हुई है।